बहोत सारी इ सर्कस दिखाई दे रही है यैलो कलर की हमें यहाँ सफ़ेद कलर की लाइटिंग --

हमें यहाँ पर बुक शेल्स दिख रहे है बुकस दिख रही है कुछ सफ़ेद कलर की पिंक कलर की ब्लैक कलर की हमें यहाँ पर --

हमें यहाँ पर बहोत सारे लोग दिख रहे है हमें यहाँ पर केक दिख रहा है फा-इ-ब-रियल येलो कलर का हमें यहाँ पर लाइटिंग दिख रही है।

हमे यहाँ पर बहोत बड़ा रोड दिख रहा है हमे यहाँ पर कुछ बिल्डिंग्स दिख रही है।